यह मानव निर्मित अ- अम्म- हाथों द्वारा बनाई गई एक शार्टकट पुलिया है। जिसे लोग --

यह टॉय पार्क है। जिसमें बच्चे लोग खेलने के लिए आते वाते हैं और यह पार्क है।

यह किसी- इ किसी बड़े वी आई पी अ- उसे कहते हैं वी आई पी होटल का ये जगह है।

पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। ऊचे ऊचे पहाड़ हैं। जंगल --